अच्छे से लगी हुई है अच्छी लग रही है।

इसमें जो टेबल वगैरा जो लगी हुई है सोफा वगैरा येभी बहोत अच्छे से लगा हुआ है।

साफ सफाई से भी लग रही है इसमें रिक्शा वगैरा चल रहे हैं साइकिल पर भी लोग जा रहे हैं।

बाकि इसके अंदर बाइक का सामान सारा मिलता है।

ये भवासा हेब का है जय भीम।

काफी अच्छे से लाइट वगैरा भी अच्छे से जल रही है इसके अंदर पंखे वगैरह भी लगे हुए हैं अच्छे से लग रहा है।

ये कोलायत का रेलवे स्टेशन है कोलायत गांव का इसमें जो लाइटिंग वगैरा भी जल रही है।

इसमें जो बैठे हैं कंप्यूटर्स वगैरा चला रहे हैं इसमें दो ए_सी भी लगी हुई हैं लाइटिंग भी लगी हुई हैं।

ये सब बोरे भर रहे हैं यहां पे मजदूरी का काम चल रहा है।

और ये साइड में चैन वगैरा भी टंगी हुई है रैक भी अच्छे से लगी हुई है पिछले पीछे बिजली का बोर्ड भी --

ये एक पेड़ भी लगा हुआ है आसमान भी बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा है इसमें।

इसमें दीवार पर जो कलर है वह भी बहुत अच्छे से लग रहा है और एक खिड़की भी है।